और बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है पीछे ग्राउन्ड में कचरा रख दिया है कचरा को हटाना चाइए जिसका भी हो कचरा कोन भी रखा होगा जाके उसे अभी हटा दो बहोत ही अच्छा जगह को गंदा नहीं करना चाइए जितना साफ रखोगे उतना स्वच्छ बनेगा--

--बहुत ही अच्छा इंडियन आय़ल है का टंकी है।

ये भारत पेट्रोलियम है बहुत ही अच्छा है।

बहुत ही खर्चा करके बनवाया होगा तब बना होगा बहुत ही अच्छा बना है भाई डिजाइन भी इसका बहुत अच्छा है।

बहुत ही अच्छा ग्राउंड दिखाई दे रहा है इस जगह जोकि एक बिल्डिंग के सामने है बहुत ही अच्छा हैं।